तो लोग वगैरह दिख र- एक रिक्शा भी दिख रहा है ऊपर मे बिजली की तार भी दिख गयी हुई है नीला आसमान भी दिख रहा है पेड़ भी दिख रहे हैं सामने एक सीढी है।

और चाट पेपर का रंग सफेद गुलाबी आसमानी रंग का हैं पीछे जाले वग़ैरा लगी हुई हैं पेड़ भी दिखाई दे रही हैं।